ये घर बना है दो तीन पीछे बगीचे वगीचे लगे हुए हैं दीपावली के उत्सव मन रहे--

यहां पे देखिए एक आदमी गाड़ी खोल रहा है इधर पूरा चीज खोल--

इधर गिट्टी उटी रखा हुआ है उधर इटा रखा हुआ है एक आदमी उधर बैठे हुए हैं।

मिर्चा भी रखा हुआ है साबूदाना आबूडाना साबुन ओबुन सब मिला रहा यहां पे--

यह फील्ड में बहोत अच्छा है। क्रिकेट खेलने वाला उधर पेड़ पौधा सब लगा हुआ है।

अंदर बाइक ओइक लगा हुआ है एक घर बना हुआ है उसके ऊपर कटकट चर रहा है।

बहोत अच्छा सजावट है डी_जे उजे सब रखा वहां सोफा रखा हुआ है लड़का लड़की के बैठने के लिए।

और टंकी पानी हैं इधर पेड़-पौधा सब लगा हुआ है उधर आदमी एक जा रहा है उधर इधर टंकी लगा हुआ कचरा वाला।

लगभग एक सौ रैक में सारी होगा ऊपर पंखा लगा है बल्ब लगा हुआ है इधर एक भाई साहब खड़ा हो के देख रहे हैं।

इधर घर है बैंक उस साइड है इसमें ब एक आदमी जा रहे है इधर कुर्सी बहोत सारा रखा हुआ है इधर दो बाइक लगा--

यहां पे मुझे बहोत सारा बस वस लगा है बस ट्रक वरक सारा चीजें उधर एक गुमती है।

पीछे बहोत बड़ा पेड़ है इधर एक दुकान था वो बंद है अभी इधर लाल घर है आगे कुर्सी रखा हुआ है इधर पंखा सब है।

र बहोत अच्छा पोस्टर लगा हुआ है एक आदमी अंदर है पाइप ओइप सारा समान दे रहा है अंदर अथीक टेप ओप सारा रख--

इधर आदमी सब है बहोत अंदर दुकान उकान का काम हो रहा है।